नीचे बहुत सारा पेड़ पौधा है।

यह बहुत बड़ा सजाया हुआ तोरनद्वार है।

बगल में एक खंभा में एक पोस्टर लगा हुआ है। जिसमें एक लड़की लड़का का फोटो है।

यहाँ बहोत सारा आदमी है।

यह बहुत बड़ा रोड है।

सीमेंट का पत्थल लगा हुआ है।

बगल में एक खम्बा भी दिख रहा हैं जिसमे तार लगा हुआ हैं।

बगल में पानी भी दिख रहा है।

हां नीचे एक आइसक्रीम का ठेला भी है।

ऊपर में सीढ़ी बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है।

यहां एक पानी का डब्बा भी रखा हुआ है।

एक पोस्टर में आधार एम्प्लॉयमेंट अपडेटेड सेंटर लिखा हुआ है।

यहां इंडियन ऑयल लाइट से लिखा हुआ है।

नीचे मैं दो आदमी है।

बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

यहां बहुत सारा भीड़ है।

यहां दो दो खंबा बड़ा बड़ा है जिसमें लाइट लगा हुआ है।

सफेद कलर का पीछे बहुत सारा बाइक भी रखा हुआ है।

बगल बहुत बड़ा पेड़ है जो बहुत हरा भरा है।

ऊपर बिल्डिंग में एक लकड़ी भी दिख रहा है।

नीचे बहुत कूड़ा कचड़ा है।

यहां एक टी_वी का छतरी लगा हुआ है।